दिखेण सी यूं हिमालय पर्वत छ लगणु और यखम हमते एक डालू भी छ दिखेणु और बेड हमते एक गौं भी छ दिखेणु।